ये एक नार्मल सा फील्ड है जहाँ पर हमे ग्रीनरी दिख रही है।

और यहाँ पर कुछ फुटबॉल्स खेल रहे हैं कुछ वॉलीबॉल ये एक और कुछ घर जैसा भी यहाँ पर दिख रहा है।

ऐसे झरने उतरकाशी में भी बहुत सारे है जैसे कि गंगोत्री में भी है यहां पे भी है बहुत सारे और इस सुहाने मौसम के लिए धन्यवाद |

यह आपके ए गण गंगौरी से ए मनेरी साइड का व्यू है जहाँ पर पाइलेट बाबा कहते हैं इसको --

ये एक माध्यमिक स्कूल है और नीला आसमान दिख रहा है बहोत सुन्दर सा जहाँ पर कि अ-टेन्थ क्लास तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं टेन्थ या फिर तवेल्थ तक के।